तीन पुरुष और दो पुरुष अलग दिखाई दे रहे हैं एक स्त्री लाल रंग की साड़ी में दिखाई दे रही है।

यह एक मार्केट का दृश्य है जहां पे अमूल कार्ड का बोर्ड लगा है तथा एक पिज्जा का भी बोर्ड लगा है।

यंत्र पे खड़े एक्सरसाइज कर रही है ल अअ ये यंत्र लोहे के है औ--